ये रोड साइड के तरफ घर है प्लास्टर नहीं हुआ है और ये कार लगा हुआ है ।.

हेयर कटिंग होता है आदि होता है। शादी विवाह एवंम मुंडन जैसे शुभ अवसर पर बुकिंग के लिए सम्पर्क करें।

और ये ए.सी. लगा हुआ है। पिंक कलर का है। कलर से --

ग्राउंड ग्रीन कलर का ग्राउंड है जहाँ साइकिल लगा हुआ है ये टावर टाइप है टावर टाइप का बना हुआ है पास-पास लोग हैं कुछ झोंपड़ हैं झोंपड़-पट्टी हैं।